सामने के तरफ इसमे रेलिंग लगी और सीढिया बनी हुई है।

माल गाड़ी भी रखी हुवी है सामने की तरफ प्लॅटफॉर्म खाली दिखाई दे रहा है।

और इसमें एक छोटासा गेट बना है जो की खुला हुआ है अंदर एक इन्सान जाते हुए दिखाई दे रहा है।

केक काफी बड़ा है केक में चॉकलेट ओरिओ बिस्किट --